ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हजारों आदमी हर रोज घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर हर किसी को आके घूमना चाहिए बहुत ही अच्छा जगह है ये।

ई गाड़ी को चलाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हर किसी को यही गाड़ी से ट्रेवल करना चाहिए। ई गाड़ी टाटा कंपनी का है।

हुंडई जो होता है। इस कंपनी का बहुत ही फेमस और अच्छा रहता है। हर किसी को यहाँ पे आके हुंडई गाड़ी लेना चाइये हुंडई का मयलेज़ बहुत ही अच्छा रहता है। हर किसी को यह लना चाइये |

क्यूंकि डांस एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज ही है । एक का बॉडी हैल्दी रहता है । हर किसी को डांस अपनी लाइफ में सिखाना चाइये ।